ये जगह बहोत ही अद्भुत और विशालीय--

ऐसी जगह है जहां लोगों को आना बहोत पसंद है।

दिखने में बहोत ही खूबसूरत है यहां हमारी नजरों के सामने--

एक्टिवा फाइव जी एंड एक्टिवा सिक्स जी को देख सकते हैं जो सत्रह से अठारह हजार में मिल जाती है तो खरीदें इसको।

ये जो पिक्चर ये एक कंट्रक्शन साइड है।